मॉल के बाहर में कांच के गेट हैं बहोत सारी लाइटे है।

और दो आदमी खड़े हैं कुछ सामान लेकर--

यह किसी चीज की फंक्शन हो रही है।

ऑफिस के बाहर में कुछ पेड़ पौधे लगे हैं।

और एसी लगी हुई है रूम में।

बहुत सारे गेटें दिख रही हैं और कुछ सामानें रखी हुई हैं।

ये किसी चीज के स्टोर रूम है स्टोर रूम में बहुत सारे कट्टे--

और पेड़ पौधे और नाव दिख रही है पानी में।

यह रोड पे एक बड़ा सा फील्ड दिख रहा है।

आदमी बैठे हुए हैं टेबल और चेयर लगी हुई है।

एक मिरर लगी है और उसके पास दो--

यह एक फील्ड में स्पोर्ट्स की कुछ।

वहां पे आसपास में बहुत सारे घने जंगल दिख रहे हैं।

एक टेबल और एक चेयर है।

और कुछ उसके बगल में कुछ सामानें रखी हैं और पानी की बोतलें रखी हैं गुब्बारों में और ए_सी और लाइट लगी है।

चेयर रखी हुई है बहुत दूर तक में दिख रहा है एक आदमी खड़ा है।

और बहुत सारे गाड़ी रखी हुई हैं लगी हुई है।

यह किसी चीज़ की गोडाउन है गोडाउन में--

एक दूसरे को काम सिखा रहे हैं।

और कुछ पूजों करने की सामानें रखी हैं।

एक बड़ी सी फील्ड दिख रही है।

और कुछ एक साइकिल रखी हुई है बड़ी सी टेबल पे और बहुत बड़े-बड़े से फ्लैट है आसपास में बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

और फील्ड के चारों तरफ ग्रीन कलर के पर्दे लगे है।

और दूर दूर में दो तीन फ्लैटे दिख रही है और बहोत सारे घने जंगल दिख रहे हैं।

और दो-तीन पंखे लटके हुए--

यह किसी का घर दिख रहा है।

गी पार्क है यहां पे बैठक--

पास में एक खने बड़ा सा पेड़ है लगा हुआ।

यह बस स्टैंड है यहाँ पे बहु बहुत सारे बसें लगी हुई हैं।

और कुछ बोर्डे लगी हुई हैं उसके बगल में भी एक दुकान है।

और बोहोत सारे लोग घूम डहे हैं उस फील्ड में--

फूल का माला टंगा हुआ है और बहुत सारे फूल इकट्ठे में रखे हुए--

एक अ घर दिख रहा है घर के--

पर मे फ्यूचर ट्रेक अटेक अकेडमी का बोर्ड लगा हुआ है।

यहां पे एकअ रूम मे एक--

और जंगल में बहुत सारे बकरी--

हैप्पी बर्थडे का एक गुब्बारें लगी हैं।

पंखे टंगी हुई है टेबल रखी हुई है बैठने की सीटें --

यह रेस्टोरेंट है रेस्टोरेंट में टी_वी लगी हुई है ए_सी लगी हुई है पंखे लगे हुए हैं।

यह किसी चीज की फैक्ट्री है फैक्ट्री में बहुत सारी लकड़ियां रखी हुई हैं।

यह किसी चीज की क्लासरूम है क्लासरूम में बैठने की और पढ़ने की टेबल रखी हुई है और बैठने की।

लाइट लगी हुई है पंखे लगी हुई है और रेड कलर के पर्दे भी लगे हुए हैं गेट पे।

ये एक रोड दिख रही है रोड पे दो तीन फ़्लैटे दिख रही हैं घर है ऑफिस है।

दो फोटो फ्रेमिंग रखी है लाइटें लगी है एसी लगी है।

और कुछ स्टेज पे बहुत सारे लोग बैठ के मीटिंग कर रहे हैं।

जहां पे दो लेडीजे और एक जेंट्स बैठे हुए हैं।

और दूसरे साइड में एक जेंट्स बैठा हुआ है चेयर पे और एक टेबल है टेबल पे टेलीफोन है लेडलाइन है।

और एक बड़ा सा फ्लैट दिख रहा है।

यह एक रोड पे है किसी कमेटी हॉल की।

है जहां पे आगे गेट के पास दो लाइटे लगी है।

ये ड्राई क्लीनर की दुकानें --

यहाँ पे एक आदमी खड़ा है दुकान में एक आयरन रखी है कुछ कपड़े टंगे हुए हैं और वाशिंग मशीन है।

और लाइटे लगी है एक टेबल है दो चेयर लगी हुई है।

गोडाउन बनी हुई है और दूर-दूर में एक दो-तीन फोर व्हीलर खड़ी हैं।

लाल पीले नीले रंग की गुब्बारों से सजी हुई है और बैठने की कुछ सीटें लगी हुई हैं।

और चारों तरफ फोटोस लगी हुई हैं।

ये कैफ़े है कैफ़े में पिज़्ज़ा अमूल --